कुछ प्लास्टिक एक बेकेट में है कोई जाड़ में है।

खतरनाक है इसे पिंजड़े में रखा गया है यह पिंजड़ा लोहे के तार से बनी हुई है।